बेड के ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए दिख रहे हैं।

मेडिकल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दुकान में कुछ बच्चे आदमी और औरत भी बैठे हुए--

लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये एक कॉन्वेंट स्कूल की बिल्डिंग है।

सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

टेबल्स और चेयर दिख रहे हैं यहां पर बहोत सारी लड़कियां बैठी हुई दिखाई दे रही है यहां पर सामने कुछ लड़के भी--

सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

सामने एक हाल दिखाई दे रहा है हॉल में एक साइकिल लगा हुआ--

दिखाई दे रही है ये नापतोल वाली मशीन है।